कैफ़े एक महत्वपूर्ण उपयोग की जगह है यहाँ पे हमें बोहोत ही अच्छा चाय व बोहोत ही प्रकार का खाद्यान्न मिल सकता हैं।

बहुत ही बहुत ही स्वादिष्ट एवं कई प्रकार के विकल्प जैसे की नमकीन मीठा ऐसी स्वादिष्ट वस्तु जो हमारी जिह्वा को--

यह ऐसी सुविधा है जिससे मनुष्य को कहीं दूर दराज में भटकना नहीं पड़ता और उसे आसनी से सरलता से अपनी डेली रूटीन की वस्तुए मिल जाती--

थ्री डी या फाइब जी आजकल मनुष्य ने बहुत ही ज्यादा प्रदूषण फैलाया है इस प्रदूषण का।

जो कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहोत ही ज्यादा जरुरी है।

यहाँ इसको फिर छोटे-छोटे हिसो में बाट के एक जगह से दूसरी जगह स्टोर किया जाता है।